दूसरी साइड में एक मकान बना हुआ है मकान तीन मंजली है उसकी खिड़की नजर आ रही है कुछ लोग बाइक पे नजर आ रहे हैं।

सामने में एक जगह नजर आ रही है यह कंपनी की जगह है।

यहाँ पे शुगर लिखा हुआ है यह एनर्जी एल --

साइड में कुछ पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं और यहाँ पे जो टाइल में है वो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं।

सामने में दो रिक्शा खड़ी हुई नजर आ रही हैं पीछे में एक मंदिर नजर आ रहा है रिक्शा का कलर बहुत अच्छा है।

रेड और येलो कलर की रिक्शा है रिक्शा पे जो छत है उसका कलर भी रेड है।

पेड़ों को अच्छे से चांदनी से ढक के रखा हुआ है यहाँ पे फूल पौधों के भी नजर आ रहे हैं।

दो पिलर नजर आ रहे है छत पे जो नक्शकारी की गई है बोहोत अच्छी लग रही है और यहाँ पे एक पॉट पड़ा है एक टेबल लग रहा है साइड में कुछ दिख रहा है।

फ्रूट्स रखे हुए हैं पत्ता गोभी रखी हुई है टमाटर रखे हुए हैं केले रखे हुए हैं प्याज रखा हुआ है प्लेट रखी हुई है और थोड़ा सा--